बिछाई जा रही है ओर छत डालने की तैयारी हो रही है| यहाँ पे एक डिश लगा हुआ है| हवेली के वायर भी दिख रहे है|

हरी लाइटनिंग के वजह से ये गुलदस्ते और और भि सुदर लग रहे है ।

ये काऊ की फूलन की दुकान हैं। बोहोत तो फूल दिख रहे हैं। काउंटर लगो हुओ। पंखा दिख रहो है और एक स्टूल रखो है।

ये एक बहुत अच्छी बात है की हमारे यहाँ जानवरों की देख भाल अच्छे से हो रही है ।

यह भी एक जिम का फोटो है। यहां पे बहोत सी जिम एसेसीरिस रखी हुई हैं। ये भी बहोत अच्छे तरीके से रखी हुई हैं।

यहाँ पे धान की रडाई चल रही बोहोत अच्छा नजारा है।